यहाँ पर बहुत बड़ा जलस्थल वहाँ नज़र आ रहा हैं डैम का और वहाँ पर डैम को खुला हला गया नज़र आ रहा हैं।

और वहाँ कुछ ड्रम्स वहाँ पर रखे हुई हैं और वहाँ पर बाइक्स नज़र आ रहे हैं और कुछ बास्केट रखी हैं वो ब्लू कलर की हैं साइकिल दिखाई दे रहा हैं।

बहुत बड़ी जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर ट्रक्स नजर आ रहे है जो व्हाइट कलर के है और वहां पर हरे पेड़ दिखाई दे रहे है और पोल नजर आ रहा है बहुत बड़ा जो ब्राउन कलर का है।

दृश्य दिखाई दे रहा हैं बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इसके अंदर में कुछ कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं जो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं।

रिंग दिखाई दे रही है जो वाईट कलर की है उसमें मीनार नजर आ रहा है गेट की रेलिंग्स नज़र आ रहे है।